और जो सीलिंग नाजार आरही है लाईटस् बाहा लागे हुए है कुछ लाईटींग सीरीज दिख रहे है। और एनट्रान्स गेट जो है वह कांच का नजर आरहा है वहां कुछ दो चीज लागेहुए दिखरहे है।

जो कुछ और भी नजर आ रहा है शोप सभी पोज बड़े नजर आ रहे है इलेक्ट्रिक वायर्स नजर आ रहे हैआसमान भी साफ दिखाई हे रहे है।